रेड रंग के पत्थर दिखाई दे रहे हैं और एक येलो रंग भी है और इसमें एक लड़के भी खड़ा है और पीछे से मुझे गाड़ी भी नजर आ रही है और यहां पर लैंप है जिसमें कि --